उसके बाद सामने पर एक डस्टबिन दिख रहे है।

और बड़े-बड़े पक्खल दिख रहे हैं ओके बाद एक मिट्टी-सा ब-बड़ा-सा ढेर दिख रहे हैं।

सामने पे कई सारे भाई दिख रहे हैं के मोमबत्ती बहुत सारे दिख रहे हैं ।

कई सारे बच्चिए दिख रहे हैं कई सारे आंटी दिख रहे हैं। सामने में व्हाइट व्हाइट कलर के --

बहुत सारा पानी दिख रहा है सामने में कई छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे हैं।